यहां पर खाने पीने का आइटम रखी गई है लाइट्स लगा हुआ है खाने पीने का आइटम खाने नहीं है और यहां पड़ ।

ये एक सिग्नल है लाइट लगा हुआ है।